दृश्य में दो दुकान दिखाई दे रहे हैं दोनों का नाम गणेश इंटरप्राइजेज ही हैं सामने की तरफ एक बाइक दिखाई दे रही है।

यहां पे और भी कई सारे डिब्बे रखे हुए हैं बगल की तरफ एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

सब बच्चे नीले और लाल रंग के कपड़े पे बैठे हुए हैं।

यह दृश्य एक मंदिर के एंट्रेंस का है सामने की तरफ एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ तीन दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं एक लड़के ने अपने अपने हाथ को एक बाल्टी के अंदर घुसाया हुआ है।